बाहर रखी हुई दिखाई दे रही हैं और अंदर उम्म अंदर स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही हैं जो की दो तीन कलर की हैं।

इस इमेज मे मुझे एक पेट्रोल पंप का खंभा दिखाई दे रहा हैं एक वैन दिखाई एम्बुलेंस --

इमेज मे मुझे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे हरी हरी घाँस दिखाई दे रही हैं आजू बाजू बहुत सारी घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

--और मिट्टी सी दिखाई दे रही हैं ग्राउन्ड में।

पेड़ की लगे दिखाई दे रहे है और ब्लू कलर के ड्रम्स सी दिखाई दे रहे हैं।